मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
पिछले महीने हम सब दिवाली का आनंद ले रहे थे
हर वर्ष की तरह इस बार दिवाली के मौके पर मैं फिर एक बार जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिये चीन की सीमा पर सरहद पर गया था
आईटीबीपी के जवान सेना के जवान उन सबके साथ हिमालय की ऊंचाइयों में दिवाली मनाई
मैं हर बार जाता हूँ लेकिन इस दिवाली का अनुभव कुछ और था
देश के सवासौ करोड़ देशवासियों ने जिस अनूठे अंदाज़ में यह दिवाली सेना के जवानों को समर्पित की सुरक्षा बलों को समर्पित की इसका असर वहाँ हर जवानों के चेहरे पर अभिव्यक्त होता था
वो भावनाओं से भरेभरे दिखते थे और इतना ही नहीं देशवासियों ने जो शुभकामनायेंसन्देश भेजे अपनी ख़ुशियों में देश के सुरक्षा बलों को शामिल किया एक अद्भुत रिस्पांस था
और लोगों ने सिर्फ़ सन्देश भेजे ऐसा नहीं मन से जुड़ गए थे किसी ने कविता लिखी किसी ने चित्र बनाए किसी ने कार्टून बनाए किसी ने वीडियो बनाए यानि न जाने हर घर सेनानियों की जैसे चौकी बन गया था
और जब भी ये चिट्ठियाँ मैं देखता था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितनी कल्पकता है कितनी भावनायें भरी हैं और उसी में से माइगोव को विचार आया कि कुछ चुनिन्दा चीज़ें निकाल करके उसकी एक कॉफी टेबल बुक बनाई जाए
काम चल रहा है आप सबके योगदान से देश के सेना के जवानों की भावनाओं को आप सबकी कल्पकता से देश के सुरक्षा बलों के प्रति आपका जो भावविश्व है वह इस ग्रन्थ में संकलित होगा
सेना के एक जवान ने मुझे लिखा प्रधानमंत्री जी हम सैनिकों के लिये होली दिवाली हर त्योहार सरहद पर ही होता है हर वक्त देश की हिफाज़त में डूबे रहते हैं
हाँ फिर भी त्योहारों के समय घर की याद आ ही जाती है
लेकिन सच कहूँ इस बार ऐसा नहीं लगा
ऐसा कतई फील नहीं हुआ कि त्योहार है और मैं घर नहीं हूँ
ऐसा महसूस हुआ मानो हम भी सवासौ करोड़ भारतवासियों के साथ दिवाली मना रहे हैं
मेरे प्यारे देशवासियो जो अहसास इस दिवाली इस माहौल में जो अनुभूति हमारे देश के सुरक्षा बलों के बीच जवानों के बीच जगा है क्या ये सिर्फ़ कुछ मौकों पर ही सीमित रहना चाहिये मेरी आपसे अपील है कि हम एक समाज के रूप में राष्ट्र के रूप में अपना स्वभाव बनाएँ हमारी प्रकृति बनाएँ
कोई भी उत्सव हो त्योहार हो खुशी का माहौल हो हमारे देश के सेना के जवानों को हम किसीन किसी रूप में ज़रूर याद करें
जब सारा राष्ट्र सेना के साथ खड़ा होता है तो सेना की ताक़त 125 करोड़ गुना बढ़ जाती है
कुछ समय पहले मुझे जम्मूकश्मीर से वहाँ के गाँव के सारे प्रधान मिलने आये थे
जम्मुकश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ये लोग थे
कश्मीर घाटी से अलगअलग गाँवों से आए थे
क़रीब 4050 प्रधान थे
काफ़ी देर तक उनसे मुझे बातें करने का अवसर मिला
वे अपने गाँव के विकास की कुछ बातें लेकर के आए थे कुछ माँगें लेकर के आए थे लेकिन जब बात का दौर चल पड़ा तो स्वाभाविक था घाटी के हालात क़ानून व्यवस्था बच्चों का भविष्य ये सारी बातें निकलना बड़ा स्वाभाविक था
और इतने प्यार से इतने खुलेपन से गाँव के इन प्रधानों ने बातें की हर चीज़ मेरे दिल को छूने वाली थी
बातोंबातों में कश्मीर में जो स्कूलें जलाई जाती थीं उसकी चर्चा भी हुई और मैंने देखा कि जितना दुःख हम देशवासियों को होता है इन प्रधानों को भी इतनी ही पीड़ा थी और वो भी मानते थे कि स्कूल नहीं बच्चों का भविष्य जलाया गया है
मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप जाकर के इन बच्चों के भविष्य पर अपना ध्यान केन्द्रित करें
आज मुझे ख़ुशी हो रही है कि कश्मीर घाटी से आए हुए इन सभी प्रधानों ने मुझे जो वचन दिया था उसको भलीभाँति निभाया गाँव में जाकर के सब दूर लोगों को जागृत किया
अभी कुछ दिन पहले जब बोर्ड की एक्साम हुई तो कश्मीर के बेटे और बेटियों ने क़रीब 95 पचानबे फ़ीसदी कश्मीर के छात्रछात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लिया
बोर्ड की परीक्षाओं में इतनी बड़ी तादाद में छात्रों का सम्मिलित होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जम्मूकश्मीर के हमारे बच्चे उज्ज्वल भविष्य के लिये शिक्षा के माध्यम से विकास की नई ऊँचाइयों को पाने के लिये कृतसंकल्प हैं
उनके इस उत्साह के लिये मैं छात्रों को तो अभिनन्दन करता हूँ लेकिन उनके मातापिता को उनके परिजनों को उनके शिक्षकों को और सभी ग्राम प्रधानों को भी ह्रदय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ
प्यारे भाइयो और बहनों इस बार जब मैंने मन की बात के लिये लोगों के सुझाव मांगे तो मैं कह सकता हूँ कि एकतरफ़ा ही सबके सुझाव आए
सब कहते थे कि 500 और 1000 वाले नोटों पर और विस्तार से बातें करें
वैसे 8 नवम्बर रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए देश में सुधार लाने के एक महाभियान का आरम्भ करने की मैंने चर्चा की थी
जिस समय मैंने ये निर्णय किया था आपके सामने प्रस्तुत रखा था तब भी मैंने सबके सामने कहा था कि निर्णय सामान्य नहीं है कठिनाइयों से भरा हुआ है
लेकिन निर्णय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही उस निर्णय को लागू करना है
और मुझे ये भी अंदाज़ था कि हमारे सामान्य जीवन में अनेक प्रकार की नयीनयी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा
और तब भी मैंने कहा था कि निर्णय इतना बड़ा है इसके प्रभाव में से बाहर निकलने में 50 दिन तो लग ही जाएँगे
और तब जाकर के नॉर्मल अवस्था की ओर हम क़दम बढ़ा पाएँगे
70 साल से जिस बीमारियों को हम झेल रहे हैं उस बीमारियों से मुक्ति का अभियान सरल नहीं हो सकता है
आपकी कठिनाइयों को मैं भलीभांति समझ सकता हूँ
लेकिन जब मैं आपका समर्थन देखता हूँ आपका सहयोग देखता हूँ आपको भ्रमित करने के लिये ढेर सारे प्रयास चल रहे हैं उसके बावजूद भी कभीकभी मन को विचलित करने वाली घटनायें सामने आते हुए भी आपने सच्चाई के इस मार्ग को भलीभांति समझा है देशहित की इस बात को भलीभांति आपने स्वीकार किया है
पाँच सौ और हज़ार के नोट और इतना बड़ा देश इतनी करेंसियों की भरमार अरबोंखरबों नोटें और ये निर्णय पूरा विश्व बहुत बारीक़ी से देख रहा है हर कोई अर्थशास्त्री इसका बहुत एनालिसिस कर रहा है मूल्यांकन कर रहा है
पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि हिन्दुस्तान के सवासौ करोड़ देशवासी कठिनाइयाँ झेल करके भी सफलता प्राप्त करेंगे क्या विश्व के मन में शायद प्रश्नचिन्ह हो सकता है भारत को भारत के सवासौ करोड़ देशवासियों के प्रति सिर्फ़ श्रद्धा ही श्रद्धा है विश्वास ही विश्वास है कि सवासौ करोड़ देशवासी संकल्प पूर्ण करके ही रहेंगे
और हमारा देश सोने की तरह हर प्रकार से तप करके निखर करके निकलेगा और उसका कारण इस देश का नागरिक है उसका कारण आप हैं इस सफलता का मार्ग भी आपके कारण ही संभव हुआ है
पूरे देश में केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय स्वराज संस्थाओं की सारी इकाइयाँ एक लाख तीस हज़ार बैंक ब्रांच लाखों बैंक कर्मचारी डेढ़ लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस एक लाख से ज़्यादा बैंकमित्र दिनरात इस काम में जुटे हुए हैं समर्पित भाव से जुटे हुए हैं
भाँतिभाँति के तनाव के बीच ये सभी लोग बहुत ही शांतचित्त रूप से इसे देशसेवा का एक यज्ञ मान करके एक महान परिवर्तन का प्रयास मान करके कार्यरत हैं
सुबह शुरू करते हैं रात कब पूरा होगा पता तक नहीं रहता है लेकिन सब कर रहे हैं
और उसी का कारण है कि भारत इसमें सफल होगा ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है
और मैंने देखा है कि इतनी कठिनाइयों के बीच बैंक के पोस्ट ऑफिस के सभी लोग काम कर रहे हैं
और जब मानवता के मुद्दे की बात आ जाए तो वो दो क़दम आगे दिखाई देते हैं
किसी ने मुझे कहा कि खंडवा में एक बुज़ुर्ग इंसान का एक्सीडेंट हो गया
अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई
वहाँ स्थानीय बैंक के कर्मचारी के ध्यान में आया और मुझे ये जान करके खुशी हुई कि ख़ुद जाकर के उनके घर उस बुज़ुर्ग को उन्होंने पैसे पहुँचाए ताकि इलाज़ में मदद हो जाए
ऐसे तो अनगिनत किस्से हर दिन टीवी में मीडिया में अख़बारों में बातचीत में सामने आते हैं
इस महायज्ञ के अन्दर परिश्रम करने वाले पुरुषार्थ करने वाले इन सभी साथियों का भी मैं ह्रदय से धन्यवाद करता हूँ
शक्ति की पहचान तो तब होती है जब कसौटी से पार उतरते हैं
मुझे बराबर याद है जब प्रधानमंत्री के द्वारा जनधन योजना का अभियान चल रहा था और बैंक के कर्मचारियों ने जिस प्रकार से उसको अपने कंधे पर उठाया था और जो काम 70 साल में नहीं हुआ था उन्होंने करके दिखाया था
उनके सामर्थ्य का परिचय हुआ
आज फिर एक बार उस चुनौती को उन्होंने लिया है और मुझे विश्वास है कि सवासौ करोड़ देशवासियों का संकल्प सबका सामूहिक पुरुषार्थ इस राष्ट्र को एक नई ताक़त बना करके प्रशस्त करेगा
लेकिन बुराइयाँ इतनी फैली हुई हैं कि आज भी कुछ लोगों की बुराइयों की आदत जाती नहीं है
अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे ये काले धन ये बेहिसाबी पैसे ये बेनामी पैसे कोईनकोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूँ
वो अपने पैसे बचाने के फ़िराक़ में गैरक़ानूनी रास्ते ढूंढ़ रहे हैं
दुःख की बात ये है कि इसमें भी उन्होंने ग़रीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है
ग़रीबों को भ्रमित कर लालच या प्रलोभन की बातें करके उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं
मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूँ सुधरना न सुधरना आपकी मर्ज़ी क़ानून का पालन करना न करना आपकी मर्ज़ी वो क़ानून देखेगा क्या करना लेकिन मेहरबानी करके आप ग़रीबों की ज़िंदगी के साथ मत खेलिए
आप ऐसा कुछ न करें कि रेकॉर्ड पर ग़रीब का नाम आ जाए और बाद में जब जाँच हो तब मेरा प्यारा ग़रीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फँस जाए
और बेनामी संपत्ति का इतना कठोर क़ानून बना है जो इसमें लागू हो रहा है कितनी कठिनाई आएगी
और सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देशवासियों को कोई कठिनाई आए
मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान आशीष ने इस पाँच सौ और हज़ार के माध्यम से भ्रष्टाचार और काले धन के ख़िलाफ़ जो लड़ाई छेड़ी गयी है उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया है उसे सराहा है
सर नमस्ते मेरा नाम आशीष पारे है
मैं ग्राम तिराली तहसील तिराली ज़िला हरदा मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक हूँ
आप के द्वारा जो मुद्रा हज़ारपाँच सौ के नोट बंद किए गए हैं यह बहुत ही सराहनीय है
मैं चाहता हूँ कि मन की बात में कई उदाहरण लोगों को बताइए कि लोगों ने असुविधा सहन करने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्र उन्नति के लिये यह कड़ा क़दम के लिए स्वागत किया है जिससे लोग एक तरह से उत्साहवर्द्धित होंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए कैशलेस प्रणाली बहुत आवश्यक है और मैं पूरे देश के साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हज़ारपाँच सौ के नोट बंद करा दिए
वैसा ही मुझे एक फ़ोन कर्नाटक के श्रीमान येलप्पा वेलान्कर जी की तरफ़ से आया है
मोदी जी नमस्ते मैं कर्नाटक का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का इस गाँव से येलप्पा वेलान्कर बात कर रहा हूँ
आपको मन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएँगे लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा कि ऐसा बड़ा क़दम आप उठाएँगे
पाँच सौ का और हज़ार का नोट ये सब देखकर के काला धन और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया
हर एक भारत के नागरिक को इससे अच्छे दिन कभी नहीं आएँगे
इसी के लिए मैं आपको मनपूर्ण धन्यवाद करना चाहता हूँ
कुछ बातें मीडिया के माध्यम से लोगों के माध्यम से सरकारी सूत्रों के माध्यम से जानने को मिलती हैं तो काम करने का उत्साह भी बहुत बढ़ जाता है
इतना आनंद होता है इतना गर्व होता है कि मेरे देश में सामान्य मानव का क्या अद्भुत सामर्थ्य है
महाराष्ट्र के अकोला में नेशनल हाइवे NH6 वहाँ कोई एक रेस्टॉरेंट है
उन्होंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया है कि अगर आप की जेब में पुराने नोट हैं और आप खाना खाना चाहते हैं तो आप पैसों की चिंता न करें यहाँ से भूखा मत जाइए खाना खा के ही जाइए और फिर कभी इस रास्ते से गुजरने का आ जाए आपको मौका तो ज़रूर पैसे दे कर के जाना
और लोग वहाँ जाते हैं खाना खाते हैं और 246 दिन के बाद जब वहाँ से फिर से गुजरते हैं तो फिर से पैसे भी लौटा देते हैं
ये है मेरे देश की ताक़त जिसमें सेवाभाव त्यागभाव भी है और प्रामाणिकता भी है
मैं चुनाव में चाय पर चर्चा करता था और सारे विश्व में ये बात पहुँच गई थी
दुनिया के कई देश के लोग चाय पर चर्चा शब्द भी बोलना सीख गए थे
लेकिन मुझे पता नहीं कि चाय पर चर्चा में शादी भी होती है
मुझे पता चला कि 17 नवम्बर को सूरत में एक ऐसी शादी हुई जो शादी चाय पर चर्चा के साथ हुई
गुजरात में सूरत में एक बेटी ने अपने यहाँ शादी में जो लोग आए उनको सिर्फ़ चाय पिलाई और कोई जलसा नहीं किया न कोई खाने का कार्यक्रम कुछ नहीं क्योंकि नोटबंदी के कारण कुछ कठिनाई आई थी पैसों की
बारातियों ने भी उसे इतना ही सम्मान माना
सूरत के भरत मारू और दक्षा परमार उन्होंने अपनी शादी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ़ काले धन के खिलाफ़ ये जो लड़ाई चल रही है उसमें जो योगदान किया है ये अपने आप में प्रेरक है
नवपरिणीत भरत और दक्षा को मैं बहुतबहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और शादी के मौके को भी इस महान यज्ञ में परिवर्तित करके एक नये अवसर में पलट देने के लिए बहुतबहुत बधाई देता हूँ
और जब ऐसे संकट आते हैं लोग रास्ते भी बढ़िया खोज लेते हैं
मैंने एक बार टीवी न्यूज़ में देखा रात देर से आया था तो देख रहा था
असम में धेकियाजुली करके एक छोटा सा गाँव है
टीवर्कर रहते हैं और टीवर्कर को साप्ताहिक रूप से पैसे मिलते हैं
अब 2000 रुपये का नोट मिला तो उन्होंने क्या किया चार अड़ोसपड़ोस की महिलायें इकट्ठी हो गयी और चारों ने साथ जाकर के ख़रीदी की और 2000 रुपये का नोट पेमेंट किया तो उनको छोटी करेंसी की जरुरत ही नहीं पड़ी क्योंकि चारों ने मिलकर ख़रीदा और तय किया कि अगले हफ़्ते मिलेंगे तब उसका हिसाब हम कर लेंगे बैठ करके
लोग अपनेआप रास्ते खोज रहे हैं
और इसका बदलाव भी देखिए सरकार के पास एक मेसेज आया असम के टीईए गार्डेन के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एटीएम लगाओ
देखिए किस प्रकार से गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा है
इस अभियान का कुछ लोगों को तत्काल लाभ मिल गया है
देश को तो लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा लेकिन कुछ लोगों को तो तत्काल लाभ मिल गया है
थोड़ा हिसाब पूछा क्या हुआ है तो मैंने छोटेछोटे जो शहर हैं वहाँ की थोड़ी जानकारी पाई
क़रीब 4050 शहरों की जानकारी जो मुझे मिली कि इस नोट बंद करने के कारण उनके जितने पुराने पैसे बाक़ी थे लोग पैसे नहीं देते थे टैक्स के पानी का टैक्स नहीं बिजली का नहीं पैसे देते ही नहीं थे और आप भलीभाँति जानते हैं ग़रीब लोग 2 दिन पहले जा कर के पाईपाई चुकता करने की आदत रखते हैं
ये जो बड़े लोग होते हैं न जिनकी पहुँच होती है जिनको पता है कि कभी भी उनको कोई पूछने वाला नहीं है वो ही पैसे नहीं देते हैं
और इसके लिए काफ़ी बकाया रहता है
हर म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स का मुश्किल से 50 आता है
लेकिन इस बार 8 तारीख़ के इस निर्णय के कारण सब लोग अपने पुराने नोटें जमा कराने के लिए दौड़ गए
47 शहरी इकाइयों में पिछले साल इस समय क़रीब तीनसाढ़े तीन हज़ार करोड़ रुपये का टैक्स आया था
आपको जान कर के आश्चर्य होगा आनंद भी होगा इस एक सप्ताह में उनको 13 हज़ार करोड़ रुपये जमा हो गया
कहाँ तीनसाढ़े तीन हज़ार और कहाँ 13 हज़ार और वो भी सामने से आकर के
अब उन म्यूनिसिपैलिटी में 4 गुना ये पैसा आ गया तो स्वाभाविक है ग़रीब बस्तियों में गटर की व्यवस्था होगी पानी की व्यवस्था होगी आंगनबाड़ी की व्यवस्था होगी
ऐसे तो कई उदाहरण मिल रहे हैं कि जिसमें इसका सीधासीधा लाभ भी नज़र आने लगा है
भाइयोबहनो हमारा गाँव हमारा किसान ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक मज़बूत धुरी हैं
एक तरफ़ अर्थव्यवस्था के इस नये बदलाव के कारण कठिनाइयों के बीच हर कोई नागरिक अपने आपको एडजस्ट कर रहा है
लेकिन मैं मेरे देश के किसानों का आज विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ
अभी मैं इस फ़सल की बुआई के आँकड़े ले रहा था
मुझे ख़ुशी हुई चाहे गेहूँ हो चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो नवम्बर की 20 तारीख़ तक का मेरे पास हिसाब था पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी मात्रा में बुआई बढ़ी है
कठिनाइयों के बीच भी किसान ने रास्ते खोजे हैं
सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं जिसमें किसानों को और गाँवों को प्राथमिकता दी है
उसके बाद भी कठिनाइयाँ तो हैं लेकिन मुझे विश्वास है कि जो किसान हमारी हर कठिनाइयाँ प्राकृतिक कठिनाइयाँ हो उसको झेलते हुए भी हमेशा डट करके खड़ा रहता है इस समय भी वो डट करके खड़ा है
हमारे देश के छोटे व्यापारी वे रोजगार भी देते हैं आर्थिक गतिविधि भी बढ़ाते हैं
पिछले बजट में हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया था कि बड़ेबड़े मॉल की तरह गाँव के छोटेछोटे दुकानदार भी अब चौबीसों घंटा अपना व्यापार कर सकते हैं कोई क़ानून उनको रोकेगा नहीं
क्योंकि मेरा मत था बड़ेबड़े मॉल को 24 घंटे मिलते हैं तो गाँव के ग़रीब दुकानदार को क्यों नहीं मिलना चाहिये मुद्रायोजना से उनको लोआन देने की दिशा में काफी इनिशिएटिव लिए
लाखोंकरोड़ों रुपये मुद्रायोजना से ऐसे छोटेछोटे लोगों को दिए क्योंकि ये छोटा कारोबार करोड़ों की तादाद में लोग करते हैं और अरबोंखरबों रुपये के व्यापार को गति देते हैं
लेकिन इस निर्णय के कारण उनको भी कठिनाई होना स्वाभाविक था
लेकिन मैंने देखा है कि अब तो हमारे इन छोटेछोटे व्यापारी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोबाइल अप्प के माध्यम से मोबाइल बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनेअपने तरीक़े से ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं विश्वास के आधार पर भी कर रहे हैं
और मैं अपने छोटे व्यापारी भाइयोबहनों से कहना चाहता हूँ कि मौका है आप भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर लीजिए
आप भी अपने मोबाइल फ़ोन पर बैंकों की अप्प डाउनलोड कर दीजिए
आप भी क्रेडिट कार्ड के लिए पोस मशीन रख लीजिए
आप भी बिना नोट कैसे व्यापार हो सकता है सीख लीजिए
आप देखिए बड़ेबड़े मॉल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने व्यापार को जिस प्रकार से बढ़ाते हैं एक छोटा व्यापारी भी इस सामान्य यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से अपना व्यापार बढ़ा सकता है
बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है बढ़ाने का अवसर है
मैं आप को निमंत्रण देता हूँ कि कैशलेस सोसाइटी बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं आप अपने व्यापार को बढ़ाने में मोबाइल फोन पर पूरी बैंकिंग व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं और आज नोटों के सिवाय अनेक रास्ते हैं जिससे हम कारोबार चला सकते हैं
टेक्नोलॉजिकल रास्ते हैं सफे है सिक्योर है और त्वरित है
मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ़ इस अभियान को सफल करने के लिए मदद करें इतना नहीं आप बदलाव का भी नेतृत्व करें और मुझे विश्वास है आप बदलाव का नेतृत्व कर सकते हैं
आप पूरे गाँव के कारोबार में ये टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर सकते हैं मेरा विश्वास है
I मैं मज़दूर भाइयोंबहनों को भी कहना चाहता हूँ आप का बहुत शोषण हुआ है
कागज़ पर एक पगार होता है और जब हाथ में दिया जाता है तब दूसरा होता है
कभी पगार पूरा मिलता है तो बाहर कोई खड़ा होता है उसको कट देना पड़ता है और मज़दूर मजबूरन इस शोषण को जीवन का हिस्सा बना देता है
इस नई व्यवस्था से हम चाहते हैं कि आपका बैंक में खाता हो आपके पगार के पैसे आपके बैंक में जमा हों ताकि मिनिमम वेजेस का पालन हो
आपको पूरा पैसा मिले कोई कट ना करे
आपका शोषण न हो
और एक बार आपके बैंक खाते में पैसे आ गए तो आप भी तो छोटे से मोबाइल फ़ोन पर कोई बड़ा स्मार्ट फोन की ज़रूरत नहीं हैं आजकल तो आपका मोबाइल फोन भी ईबटुवे का काम करता है आप उसी मोबाइल फोन से अड़ोसपड़ोस की छोटीमोटी दुकान में जो भी खरीदना है खरीद भी सकते हैं उसी से पैसे भी दे सकते हैं
इसलिए मैं मज़दूर भाइयोंबहनों को इस योजना में भागीदार बनने के लिए विशेष आग्रह करता हूँ क्योंकि आखिरकार इतना बड़ा मैंने निर्णय देश के ग़रीब के लिये किसान के लिये मज़दूर के लिये वंचित के लिये पीड़ित के लिये लिया है उसका बेनेफिट उसको मिलना चाहिए
आज मैं विशेष रूप से युवक मित्रों से बात करना चाहता हूँ
हम दुनिया में गाजेबाजे के साथ कहते हैं कि भारत ऐसा देश है कि जिसके पास 65 जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है
आप मेरे देश के युवा और युवतियाँ मैं जानता हूँ मेरा निर्णय तो आपको पसन्द आया है
मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस निर्णय का समर्थन करते हैं
मैं ये भी जानता हूँ कि आप इस बात को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान भी करते हैं
लेकिन दोस्तो आप मेरे सच्चे सिपाही हो आप मेरे सच्चे साथी हो
माँ भारती की सेवा करने का एक अद्भुत मौका हमारे सामने आया है देश को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने का अवसर आया है
मेरे नौजवानो आप मेरी मदद कर सकते हो क्या मुझे साथ दोगे इतने से बात बनने वाली नहीं है
जितना आज की दुनिया का अनुभव आपको है पुरानी पीढ़ी को नहीं है
हो सकता है आपके परिवार में बड़े भाई साहब को भी मालूम नहीं होगा और मातापिता चाचाचाची मामामामी को भी शायद मालूम नहीं होगा
आप अप्प क्या होती है वो जानते हो ओनलाइन बैंकिंग क्या होता है जानते हो ओनलाइन टिकेट बुकिंग कैसे होता है आप जानते हो
आपके लिये चीज़ें बहुत सामान्य हैं और आप उपयोग भी करते हो
लेकिन आज देश जिस महान कार्य को करना चाहता है हमारा सपना है कैशलेस सोसाइटी
ये ठीक है कि शतप्रतिशत कैशलेस सोसाइटी संभव नहीं होती है
लेकिन क्यों न भारत लेसकैश सोसाइटी की तो शुरुआत करे
एक बार अगर आज हम लेसकैश सोसाइटी की शुरुआत कर दें तो कैशलेस सोसाइटी की मंज़िल दूर नहीं होगी
और मुझे इसमें आपकी फिजिकल मदद चाहिए ख़ुद का समय चाहिए ख़ुद का संकल्प चाहिए
और आप मुझे कभी निराश नहीं करोगे मुझे विश्वास है क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के ग़रीब की ज़िंदगी बदलने की इच्छा रखने वाले लोग हैं
आप जानते हैं कैशलेस सोसाइटी के लिये डिजिटल बैंकिंग के लिये या मोबाइल बैंकिंग के लिये आज कितने सारे अवसर हैं
हर बैंक ओनलाइन सुविधा देता है
हिंदुस्तान के हर एक बैंक की अपनी मोबाइल अप्प है
हर बैंक का अपना वॉलेट है
वॉलेट का सीधासीधा मतलब है eबटुवा
कई तरह के कार्ड उपलब्ध हैं
जनधन योजना के तहत भारत के करोड़ोंकरोड़ ग़रीब परिवारों के पास रूपे कार्ड है और 8 तारीख़ के बाद तो जो रूपे कार्ड का बहुत कम उपयोग होता था गरीबों ने रूपे कार्ड का उपयोग करना शुरू किया और क़रीबकरीब 300 उसमें वृद्धि हुई है
जैसे मोबाइल फोन में प्रीपेड कार्ड आता है वैसा बैंकों में भी पैसा ख़र्च करने के लिये प्रीपेड कार्ड मिलता है
एक बढ़िया प्लैटफार्म है कारोबार करने की उपी जिससे आप ख़रीदी भी कर सकते हैं पैसे भी भेज सकते हैं पैसे ले भी सकते हैं
और ये काम इतना सिम्पल है जितना कि आप WhatsApp भेजते हैं
कुछ भी ना पढ़ालिखा व्यक्ति होगा उसको भी आज WhatsApp कैसे भेजना है वो आता है फॉरवर्ड कैसे करना है आता है
इतना ही नहीं टेक्नोलॉजी इतनी सरल होती जा रही है कि इस काम के लिए कोई बड़े स्मार्ट फोन की भी आवश्यकता नहीं है
साधारण जो फीचर फोन होता है उससे भी कैश ट्रांसफर हो सकती है
धोबी हो सब्ज़ी बेचनेवाला हो दूध बेचनेवाला हो अख़बार बेचनेवाला हो चाय बेचनेवाला हो चने बेचनेवाला हो हर कोई इसका आराम से उपयोग कर सकता है
और मैंने भी इस व्यवस्था को और अधिक सरल बनाने के लिए और ज़ोर दिया है
सभी बैंक इस पर लगी हुई हैं कर रही हैं
और अब तो हमने ये ओनलाइन सरचार्ज का भी ख़र्चा आता था वो भी कैंसेल कर दिया है
और भी इस प्रकार के कार्ड वगैरह का जो ख़र्चा आता था उसे आपने देखा होगा पिछले 24 दिन में अख़बारों में सारे ख़र्चे ख़त्म कर दिए ताकि कैशलेस सोसाइटी की मूवमेंट को बल मिले
मेरे नौजवान दोस्तो ये सब होने के बाद भी एक पूरी पीढ़ी ऐसी है कि जो इससे अपरिचित है
और आप सभी लोग मैं भलीभांति जानता हूँ इस महान कार्य में सक्रिय हैं
WhatsApp पर जिस प्रकार के क्रिएटिव मेसेज आप देते हैं स्लोगन कवितायेँ किस्से कार्टून नयीनयी कल्पना हंसीमज़ाक सब कुछ मैं देख रहा हूँ और चुनौतियों के बीच ये हमारी युवा पीढ़ी की जो सृजन शक्ति है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भारत भूमि की विशेषता है कि किसी ज़माने में युद्ध के मैदान में गीता का जन्म हुआ था वैसे ही आज इतने बड़े बदलाव के काल से हम गुजर रहे हैं तब आपके अन्दर भी मौलिक क्रिएटिविटी प्रकट हो रही है
लेकिन मेरे प्यारे नौजवान मित्रो मैं फिर एक बार कहता हूँ मुझे इस काम में आपकी मदद चाहिए
जीजीजी मैं दुबारा कहता हूँ मुझे आपकी मदद चाहिए और आप आप मुझे विश्वास है मेरे देश के करोड़ों नौजवान इस काम को करेंगे
आप एक काम कीजिए आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए ख़ुद एक हिस्सा बनेंगे
आपके मोबाइल फोन पर ओनलाइन ख़र्च करने की जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब मौजूद होगी
इतना ही नहीं हर दिन आधाघंटा घंटा दो घंटा निकाल करके कम से कम 10 परिवारों को आप ये टेक्नोलॉजी क्या है टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करते हैं कैसे अपनी बैंकों की अप्प डाउनलोड करते हैं अपने खाते में जो पैसे पड़े हैं वो पैसे कैसे ख़र्च किए जा सकते हैं कैसे दुकानदार को दिए जा सकते हैं दुकानदार को भी सिखाइये कि कैसे व्यापार किया जा सकता है आप स्वेच्छा से इस कैशलेस सोसाइटी इन नोटों के चक्कर से बाहर लाने का महाभियान देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान कालाधन से मुक्ति दिलाने का अभियान लोगों को कठिनाइयोंसमस्याओं से मुक्त करने का अभियान इसका नेतृत्व करना है आपको
एक बार लोगों को रूपे कार्ड का उपयोग कैसे हो ये आप सिखा देंगे तो ग़रीब आपको आशीर्वाद देगा
सामान्य नागरिक को ये व्यवस्थायें सिखा दोगे तो उसको तो शायद सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी और ये काम अगर हिंदुस्तान के सारे नौजवान लग जाएँ मैं नहीं मानता हूँ ज्यादा समय लगेगा
एक महीने के भीतरभीतर हम विश्व के अन्दर एक नये आधुनिक हिंदुस्तान के रूप में खड़े हो सकते हैं और ये काम आप अपने मोबाइल फोन के ज़रिये कर सकते हो रोज़ 10 घरों में जाकर के कर सकते हो रोज़ 10 घरों को इसमें जोड़ करके कर सकते हो
मैं आपको निमंत्रण देता हूँ आइए सिर्फ समर्थन नहीं हम इस परिवर्तन के सेनानी बनें और परिवर्तन लेकर ही रहेंगे
देश को भ्रष्टाचार और कालेधन से मुक्त करने की ये लड़ाई को हम आगे बढ़ाएँगे और दुनिया में बहुत देश हैं जहाँ के नौजवानों ने उस राष्ट्र के जीवन को बदल दिया है और ये बात माननी पड़ेगी जो बदलाव लाता है वो नौजवान लाता है क्रांति करता है वो युवा करता है
केन्या उसने बीड़ा उठाया एमपीईएसए ऐसी एक मोबाइल व्यवस्था खड़ी की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया एमपीईएसए नाम रखा और आज क़रीबक़रीब अफ्रीका के इस इलाक़े में केन्या में पूरा कारोबार इस पर शिफ्ट होने की तैयारी में आ गया है
एक बड़ी क्रांति की है इस देश ने
मेरे नौजवानो मैं फिर एक बार फिर एक बार बड़े आग्रह से आपको कहता हूँ कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए
हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एनसीसी एनएसएस सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से इस काम को करने के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूँ
हम इस बात को आगे बढ़ाएँ
देश की उत्तम सेवा करने का हमें अवसर मिला है मौक़ा गंवाना नहीं है
प्यारे भाइयोबहनो हमारे देश के एक महान कवि श्रीमान हरिवंशराय बच्चन जी का आज जन्मजयंती का दिन है और आज हरिवंशराय जी के जन्मदिन पर श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने स्वच्छता अभियान के लिये एक नारा दिया है
आपने देखा होगा इस सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कलाकार अमिताभ जी स्वच्छता के अभियान को बहुत जीजान से आगे बढ़ा रहे हैं
जैसे लग रहा है कि स्वच्छता का विषय उनके रगरग में फैल गया है और तभी तो अपने पिताजी की जन्मजयंती पर भी उनको स्वच्छता का ही काम याद आयाI उन्होंने लिखा है कि हरिवंशराय जी की एक कविता है और उसकी एक पंक्ति उन्होंने लिखी है मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय
हरिवंशराय जी इसके माध्यम से अपना परिचय दिया करते थेI मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय तो उनके सुपुत्र श्रीमान अमिताभ जी ने जिसकी रगों में स्वच्छता का मिशन दौड़ रहा है उन्होंने मुझे लिखकर के भेजा है हरिवंशराय जी की कविता का उपयोग करते हुए स्वच्छ तन स्वच्छ मन स्वच्छ भारत मेरा परिचय
मैं हरिवंशराय जी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ
श्रीमान अमिताभ जी को भी मन की बात में इस प्रकार से जुड़ने के लिये और स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने के लिये भी धन्यवाद करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो अब तो मन की बात के माध्यम से आपके विचार आपकी भावनायें आपके पत्रों के माध्यम से माइगोव पर NarendraModiApp पर लगातार मुझे आपको जोड़ करके रखती हैं
अब तो 11 बजे ये मन की बात होती है लेकिन प्रादेशिक भाषाओं में इसे पूरा करने के तुरंत बाद शुरू करने वाले हैं
मैं आकाशवाणी का आभारी हूँ ये नया उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है ताकि जहाँ पर हिंदी भाषा प्रचलित नहीं है वहाँ के भी मेरे देशवासियों को ज़रूर इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा
आप सबका बहुतबहुत धन्यवाद